और उसके बाहर उसके बाहर ही ढेर सारे पौधे रखे हुए हैं एक अपार्टमेंट के घर की खिड़की भी खुली हुई है।

इसका पिन कोड भी दिया हुआ है और बाहर एक बड़ा सा पौधा भी रखा हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा मॉल है और मॉल मॉल के इर्दगिर्द बहुत सारे घर भी हैं और इमारत भी है।

और एक बड़ा सा नारियल का पेड़ और एब एक छोटा-सा नारियल का पेड़ भी नजर आ रहा है ।

किताबे सेल्‍फ पर रखी हुई है और गुब्‍बारे भी लगाया हुये हैं और मेज भी है उनमें टेका भी लगाया हुआ है ।

और छोटे-छोटे अ क रंग बिरंगे पौधे भी लटकाया हुआ है का घर लिखा हुआ है।

चोकोस के पेब पैकेट रखी हुई हैं और चॉकलेटस के पैकेट रखी हुई हैं अ --

यहां पर एक मैदान दिखाई दे रहा हैं और एक बड़ा-सा पेड़ नजदीक दिखाई दे रहा है फिर --

जहां पर भूरे रंग की कुर्सियां और मेज रखी हुई है मेज के ऊपर एक गिलास भी रखा हुआ है।